पीछे लाल कलर की साड़ी पहन के एक डम्मी खड़ी हुई है और बाइके खड़ी हुई हैं बाहर।

कुछ औरतें भी खड़ी हुई हैं एक आदमी ठेला लेकर जा रहा है।

ये किसी होटल की फोटो है जिसमें पेंटिंग लगी हुई हैं पेंटिंग में कई सारे कलर और--

मेज रखी हुई है चार कुर्सियां पड़ी हुई हैं उस पे सॉस रखा हुआ है।

एक लोग है जो उसको पेंट कर रहे है और पन्नी लगी हुई है कार पर।

लाल कलर की पेंट हो रही है इसपे और एक आदमी है जो बाल्टी लेकर नीचे बै--

और आसपास छोटी छोटी मूर्तियां बनी हैं जो हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं।

एक पास में मेज पर एक बंदूक और रखी है और गोलियाँ रखी हुई हैं लाइटें जल रही हैं।

एक टीन का गेट लगा हुआ है बड़ा सा उस पे बोर्ड लगा हुआ है।

यह किसी स्टेशनरी की फोटो है जिसमें बहोत सारे सामान मिलती है।

किचन की फोटो है जिसमें बहुत सारी सामान रखी है ग्लास --

यह एक बस स्टॉप की फोटो है जिसमें सौर ऊर्जा की प्लेट लगी हुई है खंभे की।

और दो ट्रक है एक ट्रक है जो खदान ले के जा रहा है एक--

किसी इंपॉर्टेंट कल्चर की फोटो है जिसमें कराटे वाले बच्चों को बेल्ट दी जा रही है और उनका सत्कार किया जा रहा है इसमें--

किसी असाईलम की फोटो जिसमें बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है सफेद कलर की जिससे पुताई हुईं हैं।

बहोत शांत बैठा हुआ है और पीछे पेड़ लगें हुए हैं।

ये एक सर्कस की फोटो है जिसमें हम जाकर एंजॉय करते हैं।

बस में अल्ट्राटेक सीमेंट इंजीनियर से दीवाल कि पुताई की गई है।

यहां पर सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं।

चद्दर बेड पर लगी हुई है और उसके ऊपर डालने ओढ़ने के लिए कम्बल रखा हुआ है।

आस पास लोहे की सरिया खड़ी हैं और लोहे के रॉड पड़े हुए हैं।

यह एक कैलाश कपी यंत्र उद्योग है जिसमें सारे गाड़ी के पार्ट्स और सरिया रॉड वगैरा मिलते हैं।

यह एक किसी टीले की फोटो है जिसमें माताटीला बांध का नाम का बांध है।